एक कुर्सी भी है उसे पर एक लड़का बैठा हुआ है।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

एक छोटी सी अलमारी सी भी है उसके अंदर बहुत सारी किताबें रखी हुई है।

और उन पर एक पीले कलर का तिरपाल भी पड़ा हुआ है।

और यहां पर बहुत सारे गमले रखे हुए है।

और अंदर भी बहोत कुछ सामान रखा हुआ है।